यहां डिपार्टमेंटल स्टोर नाम का एक बड़ा सा बिल्डिंग है।

आसमान पूरा सफेद रंग का है।

और यहां बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं।

बाहर पर एक टेबल सोफा और तीन येलो रंग का चेयर रखा हुआ है।

बाहर एक ब्लैक कलर का रखा है।

दीवाल को व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

वाल में बहुत सारे बैलून लगाया हुआ है।

इसका गला में माला भी पहनके है।

बिल्डिंग का वॉल में बहोत सारे ड्राइंग है।

सामने बहुत सारा घर है।

इस होटल का बाहर एक बाइक और गाये दिखाई दे रहा है।

पीछे फ्लोर का तीन दुकान बंद है।

दाएं साइड का एक औरत के गोद पर बच्चा लाल रंग का कपड़ा पहन के है।

यहां बहुत सारे लड़के और लड़कियां है।

दीवार का कलर है व्हाइट है।

पत्ता से बनाया गया दो घर भी है।

और एक औरत लाल कलर का साड़ी पहन कर खड़ा है।

ये खाना एक बड़ा सा टेबल का ऊपर रखा हुआ है।

दीवार पर बहुत सारे फोटो लटकाके हैं।

ये एक पानी का ऊपर बनाया हुआ एक पत्ता का घर है।

इस घर का अंदर बहुत सारा लड़का लोग बैठा हुआ है।

ये एक चर्च का रूम है।

यहां सफेद नीला पीला रंगों का फूल है।

यहां बहुत सारा पंखा और ए_सी लगाके है।

इस रूम का पूरा वाल व्हाइट कलर है।

ऊपर एक सी_सी कैमरा लगा के है।